सूरज दिखाई दे रहा है बहोत सारी बिल्डिंगे है नजर आ रही है मट्टी पड़ी है कार का रंग सफेद है।

इस चित्र में एक बिल्डिंग दिख रही है।

इस चित्र में एक घर दिख रहा हैं।